यहां पर मिरर के सामने थ्री वूमेंस दो बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं।

यहां एक चटाई भी है और इसके दीवाल पे पोस्टर लगा हुआ है।

स्वेटर का कलर है ब्लू रेड पिंक ब्लैक येलो

इसके चारों कोन खंभा गाढ़ा गया है जो कि व्हाइट कलर का है।

और इसका दीवार ब्ल्यू और व्हाइट से है और इसमें बहुत सारे फोटो फ्रेम हैं अंदर की ओर।

और ये इसके अंदर छोटे छोटे करके अलमीरा बनाया गया है।

और इसके वॉल पर ए_सी बहुत सारे पोस्टर और नाइट्रोजन गैस भी चिपकाया गया है।

इसका गेट जो है येलो कलर से है।

उसका कलर ब्लू और वाइट और रेड है। बंधन बैंक के आगे एक छतरी लगा हुआ है जो एयरटेल कंपनी को दर्शाता है।

एक जेंट्स खड़ा है जो कि व्हाइट शर्ट और अह येलो कलर का ब्राउन कलर का जींस पहना--

यह पार्क जैसा है जोकि बहोत सारे यहां जेंट्स लोग इकट्ठा है और बैठे हुए हैं।

और बहुत सारे जेंट्स हैं जो बोलेरो को ठीक करने में लगे हुए हैं।

तीन बड़ा बड़ा बॉटल्स है छोटे छोटे दवाइयां है डिब्बे है इसमें।

एक जेंट्स बैठा हुआ है जिसका फेस को कवर किया गया--

यह एक हाइपा है जिसमें एक सड़क का--

चार बार रोड है यह इसमें एक में बस आ रहा है।

और यहां ऊपर ब बादल है इसके ऊपर और नीचे रोड है।

एक बाइक लगा हुआ है जोकि आधा इसमें दिख रहा है ये हाईबा को जो उसे कलर किया गया है नीचे के--

लेडीज लोग पूजा करने के लिए जा रही है एक लेडीज गेट के बाहर --

घास भी है यहां पे छोटे-छोटे ग्रीन -ग्रीन और घर के आस पास छोटी-छोटी घांसे हैं।

और इसमें इसका जो सेफ है बहुत अच्छा है।

उसका कलर वाइट है यहां बहुत सारा वाइट बोड़ा है और येलो कलर के बोड़ा है।

इसके आगे थोड़ा सा अच्छा कर के पार्क टाइप का दो तीन बनाया गया है।

यह एक रेस्टोरेंट है। जो की बहुत ही अच्छा है। इसमें लाइट जल रहा है।

और इसका जो गेट हैं वह ब्लैक कलर से --

एक सोफा है अह जो कलर किया हुआ है।

यह झींगा लाइन होटल है इसके नीचे दो बोलोरो एक बाइक दो बाइक लगा हुआ है।